यहां पर समंदर है। समंदर पर पानी है। बहोत कुछ पत्थर है कलर का पानी। आसमान है।

मट्ठी है बहोत ब्यूटीफुल सुंदर है झाड़ है पेड़ है एक दम सुंदर है कोई आदमी लोड नही है एक दम पिस फुल है।

एक लेडिस है और बच्चे लोग है सब लोग है घर पर फंक्शन है।

बेट के कुछ खा रहा है टाइम पास कर रहा है सिर्फ दोनों आदमी है यहाँ पर और कुछ नही--

बैठने के लिए भी दे रखा है एकदम सुंदर है आपस में दो पेर रखा है पे--

यहां पे कुछ काम कंटेक्शन का काम कर रहे है। कुछ यू_पी_एस का कलेक्शन ले के यू_पी_एस --

ग्रीन कलर यूनिफार्म बनते है दोनों लोग ही है बी केयरफुल काम कर रहे है घर पर कोई आदमी लोग तो नहीं है।

ब्राउन कलर लकड़ी का टेबल है वहां पर कार है तीनो झाड है।

इलेक्टीकल करंट का वायर चारो तरफ तयार किया है।

कोई आदमी लॉक तो नही है सिर्फ सेलेंत है सामने इलेक्टिकल का खम्भा है करंट है ट्रांसफॉर्म है।

यहाँ पे वाकी टाकि खेल रहे हैं आठ लोग है आठ लोग ने एक लड़की है।

बाकि के सब लोग हंकल है हांकलस है सब लोग टीशर्ट पहने है टीशर्ट ने पेंट टीशर्ट --

यहाँ पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट बैठ कर कुछ मीटिंग कर रहे है सब लोग नीचे बैठे है चार लोग खुजर--

यहाँ पर पांच लोग यहाँ पर पांच लोग इधर से दो लोग बैठ के बूढ़े है जो पीछे चेयर है चेयर के पास।

ये तो इसको दुकान है येलो कलर पेंट पड़ा है ग्रीन कलर का भी सटर पर पेंट मारा है यहा पे वाइट कलर शटर पर पेंट मारा है।

कुछ बले--

यहाँ पर कुछ पार्क है पार्क पे एक हिरन हैं ब्लाेक कलर एंड वाइट सेंटर में--

कॉफ़ी कलर है यहाँ पर भी है इधर पर छे हिरन है छे हिरन इधर पर कोई आदमी लोग तो नहीं है।

इधर पे ये टेबल पे बैठके इधर पे कुछ जूस आर्डर किया है तीनों जूस इधर पे टेबल पे गिलास पे--

रॉफ का गोडाउन में आइटम लोहा का आइटम पड़ा है इधर पर कुछ बैठ ने के लिए कुछ कुर्सी है गोल ड्रम झाड़ू है।

इधर भी पूछ मोटर पेकिंग किया है उसके पर्स में कुछ प्रोडक्श किया है पार्सल --

लडकी बेठी हुई है इधर पे भी लड़का है इधर पे लडकी है इधर पे बचे वोटो गोल थरा है सब लोग ज्वाली से है।

इधर पर कुछ कस्ट इधर पर कुछ कस्टमर पलट के करके बेग रखा है।

यहाँ पर कुछ --

लेडिस बैठी है यहां पे म्यांम है इधर बच्चे लोग है सब कु ट्रेनिंग ले रहे--

यहाँ एक लड़की सुंदर जैसा डांस कर रही है एक ही लडकी है।

रखे है टेबल पर ग्रीन कलर है इधर पर मेज़रमेंट टेप रखा है कोई आदमी लोग तो नहीं है उधर--

दोनों लोग ही सब लोग कोई नहीं आस पास में पथर है इधर पर कुछ पानी पड़ पड़ के कलर तरह कलर डिफरेंट कलर हो गया है।